स्कूटियाँ खड़ी हुई है यह फोटो पुल के ऊपर से --

जिनके पास मे एक बुजुर्ग व्यक्ति भेट कर अखबार पढ़ रहे --

जो कि रात्री के समय गुलाबी रंग की रोशनी के द्वारा सजाया गया है। देखने मे यह दृश्य --

साथ एक स्वीट डिश मीठा मिष्ठान रखा हुआ है।

किसी होटल की तस्वीर प्रतीत हो रही है। जिसमे बोर्ड पर --

ये एक निजी विश्व विद्यालय की --

आंगे एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं।

जिसमें नदी बहती हुई दिखाई दे रही है जिसके दोनों तटों पर --

कुर्सी पर बैठा हुआ है। अन्य दो व्यक्ति कुर्सियों को उठा कर --

चित्र है जिसके पास में एक साईकिल खड़ी है तथा --

जिसमे की केरम रखे हुए हैं। एक व्यक्ति सफ़ेद रंग की शर्ट में --

एक ऑटो दिकाई पड़ रहा है।